आसपास हमे कुछ पौधे दिखाई दे रहे है कुछ बड़े पेड दिखाई दे रहे है इस पानी के ऊपर हमे कुछ बतक और कुछ बगुले तेरते हुवे नजर आ रहे है।

इस दृश्य मे हम देख सकते हेहमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है उसमे एक सूरज जो की डूबता हुवा नजर आ रहा हेनीचे हमे समुद्र का पानी बेहता हुवा नजर आ रहा है आसपास बड़े पत्थर नजर आ रह है दूर पे हमे कुछ पहाड़ नजर आ रहे है।

इस दृश्य को देखकर हम ये कह सकते है | यहा एक अअ दुकान है जिस के बाहर हमे कई सारी राखियों की वेराईटी दिखाई दे रही है।